और उसका सामने भी जो बहुत ज्यारा पेर हैं।

और ये जो होतेल लग रहा है।

भी आ रहे वहां से।

और कम्बल ऊनी सो ।

और ये लोग जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे--

घर भी दिखाई दे रहा है टेबल भी है।

टेबल का ऊपर जो ग्लास है बटन भी दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में जो बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

चेयर का पीछे में भी जो कुछ ये है दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और स्विच बॉक्स भी है और चार्जर और ये सब भी लगा हुआ है।

उसका सामने बहुत बड़ा सा पेड़ है।

और ओपन भी लिखा है।

गाड़ी भी एक ठो है उसका लाइट भी ऑन है।

और उसमें जो एक बेंच भी है और डेस्क भी है।

और बहुत ज्यादा स्टूडेंटस लू बैठा हुआ है।

फैन भी है और विंडो भी है।

घर का अंदर में जो बहुत जरा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

और पिलर और ये सब भी है और उसका ऊपर में जो हयुड्या भी लिखा है।

और कप और एस भी है।

और ये जो एक दुकाने है।

और दुकान के अंदर में जो और एक लड़का बैठा हुआ है।

और दुकान का वो पोस्टर में भी फ्रेंड्स ऐसा कुछ लिखा है।

और वो भी जो कुछ लाइन बनाके रखा है।

और उसमें जो आदमी लोग भी है।

और वो लोग जो फोन देखके भी बैठा है--

और एक लड़की जो नी--

और भी दिखाई दे रहा है।

बैग जैसा भी दिखाई दे रहा है।